नीचे गेट लगा हुआ है छोटा सा दो पेड़ों के बीच में और साइड में प्लांटस लगे हुए हैं और बैकग्राउंड में भी प्लांट्स लगे हुए है।

बलुंस लगे हुए है और इवनिग का टाइम है--

ये एक बिल्डिंग है और उसके पर बहत बड़े बिल्डिंग है जो ब्लू कलर की रेड कलर की हो रखी है --

और पीछे बैकग्राउंड में एक पर्दा लगा हुआ है जिसमें पिंक और ब्ल्यू कलर का आ रहा हैं बीच में एक आदमी खड़ा हुआ--

ये एक बीयर शॉप की ई ई शॉप है यहाँ पे बहोत सारी बीयर्स लगी हुई है बहोत लाइटिंग हो रखी है।

वुडन का फ्रेम बना हुआ है और उसके ऊपर लाइटिंग्स लगी हुई है दो स्टूल रखे हुए--

ये एक हॉल का पिक है यहां पे एक बैंच पड़ी हुई हैं और जीजस की फोटो लगी हुई है बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं जो पढ़ रहे हैं।

ये एक ग्राउंड है यहां पे पेड़ लगे हुए है दो एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक और--

वेटर्स लगे हुए है खाना रखा हुआ है गोलगप्पे का स्टॉल लगा हुआ है--

उसके बाहर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं दो लेडिज खड़ी हुई है--

फोन ले के सेल्फी ले रहे हें पीछे बहोत सारी मशीने लगी हुई हैं।

लोग बाइबल रीड कर रे है ऊपर बैलूनस लगे हुए है येलो और वाइट कलर के।

ये एक रूम है एक होटल टाइप का कैफ़े टाइप का है यहाँ पे दो आदमी बैठे हुए है।

नीचे काँच के मीरर में सामान रखा हुआ है अ ब्लैक कलर का म्यूजक रखा हुआ है।

यह एक लोहे सीमेंटेड का पीछे पानी हो रखा है एक आदमी जा रहा है रेड कलर की साइकिल पे।

आसमान क्लाऊडी हो रखा है वाईट कलर का क्लाउड़ हो रखा है।

ये एक गार्डन बना हुआ है यहां पे बीच में रोड जा रही है साइड में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

और प्लांट्स लगे हुये हैं छोटी-छोटी और आदमी वॉक कर रहे हैं एक-दो--

और एक जन पाईप पानी डाल रहा है और एक जन सिमेंट फोड़ता जा रहा है।

दो ग्लास रखी हुई एक प्लेट रखी हुई हैं एक बॉटल रखी हुई दो स्पून --

ये कपड़े की शॉप है एक यहाँ पे बहोत सारी कुर्तीस टंगी हुई है डिफरेंट डिफरेंट कलर --

ये इवनिंग का टाइम है ये एक रोड है और पीछे यहाँ पे बहोत सारे पेड़ लगे हुए--

और सिम की शॉप है ये दो आदमी खड़े हुए हैं रेड कलर का नीचे पेंट हो रखा है।

यह एक पूल की फोटो है यहाँ पर साइड में बैलून्स लगे हुए हैं और लाइटिंग हो रखी है।

जिंस पहनी हुई है और टी शर्ट पहनी हुई है पीछे व्हाइट कलर की टंकी रखी हुई है।

और एक गद्दा बिछा हुआ है और वारिंग डाली हुई है एक हैंड बैग रखा हुआ है।

ये एक बिल्डिंग है उसके बहर का एरिया है और दिन का टाइम है बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए--

और रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक वॉटरफॉल का एरिया है जहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें बनी हुई हैं बहोत सारे लोग खड़े हुए है।